कुछ ईटा का घर रखा हुआ है सामने एक पोस्टर है पोस्टर के पास में--

सेंटरिंग का काम चालू है बहोत सारे लोग सेंटरिंग का काम कर रहे हैं एक--

वहां पे शॉप के बच्चे बाहर निकल रहे हैं एक बच्चे के हाथ में--

यहां पे एक सर है बच्चों को पढ़ा रहा है वो सब पढ़ रहे हैं वहां पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं इसमें येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ--

कुछ चिपका हुआ है इतने सारे टाइल्स हैं टाइल्स के इतने सारे टाइल हैं टाइल के पीछे कुछ लगा हुआ है कुछ रखा हुआ है टाइल्स के आमने सामने से--

साइकिल की शाॅप है बहोत सारे साइकिल लगे हुए है छोटे भी साइकिल है बड़े भी साइकिल है बहोत सारे इतने सारे साइकिल लगे हुए यहा पे--

यहां पे इतने सारे में कटोरे लगे हुए हैं वो स्टील के हैं वहां पे--

प्लास्टिक के हैं सब सामान इतना सारा कचरा गिरा हुआ--

दो आदमी सामान खरीदने रहे हैं। एक ने ब्लैक कलर का शर्ट पहना है। एक ने चॉकलेटी कलर का शर्ट पहना है।

के वो लगे हुए है वहां पे इतना सारा सामान है सामान के पास में इतनी सारी पोस्टर लगे हुए हैं।

बहोत सारा सामान रखा हुआ है वहां पे चीजें रखी हुई हैं वहां पे--

ये बीचो बीच आह आहा खुली सी जगह है वाहा पे--

और कुछ शायर दो लोग वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पे तीन टाके रखे हुए हैं।

और कुछ लोग वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं सब एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लो--

कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं एक आदमी स्वेटर पेहने वहां वहां पे रुका हुआ है।

यहां पे इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है रेड कलर की। जमीन पर चादर बिछाई की हुई है। फूल हैं इतने सारे लोग हैं। वहां पे बंबू भी हैं। पोस्टर लगाए हुए हैं। लोग अंदर से बाहर आ जा रहे हैं।

टेंडर दिखाया गया है वहाँ पे कुछ देखने की चीज़े रखी हुई है वहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ है वहाँ पे और ये आसमानी कलर की चीज़े रखी हुई है आसमान --

इतने सारे चाक लगे हुए हैं बीच में एक खिला है खिल्ले को चाक लगाए के रखे हुए--

यहां पे इतने सारे थैले लगे हुए हैं यहां पे बॉक्स है बॉक्स के पास इतने सारे थैले हुए हैं।

रात का अंधेरा है यहां पे एक घर है घर के पार्किंग लॉट में बहोत सारे लाइटिंग लगे हुए हैं काले कलर का गेट है।

वहां पे डब्बा रखा हुआ है गेट है स्किन कलर का और दीवाल को--

एंड चॉकलेटी कलर के टायर लगाए हुए हैं।